और जालियां लगी हुई है साइड से।

इसमें कुछ बच्चे पार्क में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इधर दरवाजे पर एक घड़ी टंगी है।

और पूरा शीशे से ढका हुआ शॉप है।

और इधर उधर बिल्डिंगस दिखाई दे रही है।

उपर एक लाइट का बल्ब है बड़ा सा--

और साइड में कुछ ग्रीन कलर की दो पट्टियां है।

सभी ने अलग अलग के कपड़े लाए हैं और लेफ्ट साइड को चार मरद खड़े--

ऊपर आसमान है राइट साइड में बेड है।

एक होटल है नीचे गेट लगा है अंदर जाने को गेट के अंदर टेबल्स है।

एक पीली गाड़ी है पीली गाड़ी के पीछे एक होटल है होटल के बाहर एक पेड़ है एक गमले में पौधा रखा है।

और उधर पहाड़ी है पूरी जंगल --

पीछे पेड़ है आसमान है कुछ शॉप्स है।

हरा घास है पेड़ है।

एलो कलर का केक है जिसके उपर--

तीन चार गाड़ियां हैं पेड़ है सूखा पेड़ है हरे पेड़ है।

और बीच में एक लकड़ी का टेबल है ब्राउन कलर का साइड में दराज वाली अलमारी है।

जिम है काउंटर है काउंटर के पास एक आदमी है।

और फोटो स्टेट मशीन है। पर्दा है। परदे के पीछे खिड़की है। स्विच बोर्डस् है। प्लाईबोर्डस् है।